यहाँ लोग टॉकीज में आते है टॉकीज में फिल्में चलती है जो नई रिलीज होती है वहाँ हीरो गद्दार को बहुत ज्या -ज्यादा मारता हैं।

वह श्री कृष्णा फ्रूट एंड जूस लिखा हुआ है कॉर्नर और एक दुकानदार अपने दुकान में बैठा हुआ है कुर्सी पे हैं।

यहाँ भी एक छोटा पार्क बनाया गया है पार्क के आने के लिए छोटा -सा एक रास्ता है जिस पर टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही है फुटबॉल सी दिखाई दे रही है उसके बीच में एक तालाब भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ श्री कृष्णा फ्रूट एंड जूस कॉर्नर लिखा हुआ है नीचे जिसमें फलफलाय वाले जूस मिलते हैं आदमी आते हैं अनार का जूस पीते हैं सेब का जूस पीते हैं जैसे कई प्रकार के जूस बनते हैं।